लाल कलर का लत्ती बर हई भूक-चुकिया बल्ब लग हई हरिहर।

में लयका सब कुछो बनावय हेय ल लाल कलर से।

एगो लड़का उजर टी-शर्ट पहना हई।

मोटका पाइप ह ताड़ के पेड़ ह केला के पेड़ ह।

ग्रे कलर के टी-शर्ट पहन ह तौलिया के पगड़ी बाँध ह।

उजर कलर के फ्रॉक पहना हअ।

मो अउ टी-शर्ट ब्लू कलर क पहनो ह जींस पहनो ह उजर कलर के जूता पहनो ह।

इ प्रोजेक्ट बनावा हाई इ लाल कलर के शर्ट पेन्ह हई टाई पेन्ह हई बेल्ट पेन्ह हई।

लाल कलर के शर्ट पहना है मास्क लगाया है चश्मा पहना --